चित्र हैं यह चित्र किसी गाँव की है इस चित्र में साफ़ पता चल रहा है की एक ट्रेक्टर खड़ा हुआ है और पुलिस वालों के लिए एक रोकने ठोकने के लिए एक उनकी कुर्सी लगी हुई है।

यानी दवाइयों का काम होता हैं और कुछ लोग अंदर है और एक गाड़ी खड़ी हुई हैं और ये कच्ची जमीन है अंदर पक्की हैं औ --